टेप रखा हुआ है पेन रखा हुआ है कम्पोस --

ये के होटल है जहाँ समोसे आलुबंड़े और भी चीजे यहाँ बन रही है।

जो बाहर से दिख रहा है और बाहर से फूलों की माला से सजा हुआ है साइड में पर्दे लगे हुए है।

यहाँ लोहे के छड़े कसी है और यहाँ एक आदमी दिख रहा है जो काम कर रहा है।

सिलिंडर रखी हुई है जोकि तीन है छोटी व बड़ी।